रोडो पर बहुत सारा गाड़ी चले छै एकर बाद नाला के साइड में कोई टेंपू लगावे छै कोई गाड़ी।

कितना अच्छा पोखर छै चारों साइड गाछ छै पोखर केकर नीम के गाछ छै।